झंडा भी लगाए गए हैं तीन-चार और पीछे में पेड़ दिख रहा है और--

ये इमेज किसी शादी के शादी की स्टेज की है जिसमें स्टेज बहुत--

मंदिर जंगल में है और उसके तीन चारों तरफ हमें पेड़ ही पेड़ बहुत बड़े-बड़े दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में हमें एक घर दिखाई- दे- रहा है जिसमें तीन ऊपर तिल लगे हुए हैं रेड कलर की बीच में बना हुआ है।

इस इमेज में हमें रंग बिरंगी लाइट दिखाई दे रही है और--

स्टॉल भी रखे हुए दिखाई दे रहे है निचे एक बेड बिजी हुई है जिसका कलर ग्रीन है।

हमें तीन चार बस दिखाएं खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक ग्रीन कलर की है एक वाइट कलर की है और हमें तीन टेंपो भी रोड पर चलते हुए दिखाई दे रहें हैं एक--

इस इमेज में हमें एक गोल गुंबद ऊपर बनी हुई दिखाई दे रही है और इसमें हमें कोई मूर्ति भी दिखाई दे रही है जिसे जो गोल्डन कलर की देख रही है।

इस इमेज में हमें एक लड़की ग्रीन कलर का लहंगा पहने हुए खड़ी हुई देख रही है एक टेबल रखा हुआ है इसमें वाइट कलर का कपड़ा बिछा हुआ है।